तो जैसे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं के बताना चाहूँगा यहाँ पे जो --

और आपको बताना चा हूँगा ये जो है क्या है है बहुत अच्छा होता है और ये जो है दिखाई पड़ता है। धूप बगैर

बड़ी दूर-दूर से आते है और कोई यहाँ नज़दीकी भी होता है और यहाँ खाली पेड़ झोल पसंद जो ग्रुप खेलता है खेलने के लिए और बताना जाऊंगा यहाँ पर जो क्रिकेट खेलते है क्रिकेट है जो फुटबॉल वगेरा सब पसंद करते यहाँ खेलते है।

दोस्तों इन्फॉर्म करना चाऊंगा ये जो पेट्रोल मैं भी दिखाई पड़ रहा है वहा पे हर प्रकार है यहाँ गाड़ी पे जो है

अगर आपको भीड़ जैसा लग भीड़ रही गी तो आपको समस्या हो सकती है इसी को बचने के लिए यहां के जो ओनर होते हैं दो-तीन लेयर लगा देते है और सामान ज्यादा ज्यादा सेलिंग हो जाए ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हो सके।

ये जो कोई दिखा पड़ रहा है ये जो इंडियन ऑयल है इंडियन ऑयल में देखिये हम क्या करते हैं? फ्यूल वगेरा लेते हैं| फ्यूल हमारे लाइफ में जो है बहुत इम्पोर्टेन्ट रो रोल प्ले करता है| कोई सादे में हम उपयोग करते हैं जैसे टू व्हीलर् थ्री व्हीलर व्हीलर जो उपयोग करते है उसमें --